दोनों ने बैग और सेफ्टी गैजेट भी पहना है।

दुकान में बहुत सारे चिप्स के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

ये एक उत्सव का फोटो लग रहा है।

ट्रैक्टर एक सफेद कपड़े पहने हुए चाचा जी चला रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक सिंटेक्स भी इस बिल्डिंग के ऊपर दिखाई दे रही है।

एक आदमी ने लूंगी पहनी हुई है मच्छुवरे साथ में तौलिया भी लेकर आए हैं।

ये एक बहोत ही सुंदर मनमोहक जगह है।

काला टी शर्ट पहना हुआ आदमी बैठा हुआ।

इसमें गाने सुनने के लिए टी_वी लगाई गई है।

दृश्य से पता चल रहा है यह गाड़ी के पीछे लगाया गया है।

गार्डन पर बहुत सी हरियाली हुई है।

पीछे बहुत सारे चित्र लगाए गए हैं।

ये एक प्रिंटिंग की दुकान लग रही है।

चारो तरफ से बाउंड्री की गई है।

स्कूल के अंदर मुझे दो बड़े बड़े बस दिखाई दे रहे हैं और एक मिनी वेन भी।

चाय वाले चाय बेच रहे हैं बिस्किट वाले बिस्किट बेच रहे हैं।

बस में बहुत सारे सवार भी बैठे हुए हैं।

इसमें बेड टी_वी सोफा सब कुछ रखा हुआ है।

इस चित्र में एक अं ग्रोसरी की दुकान दिख रही है।

दुकान पर बहुत से चिप्स के पैकेट रखे गए हैं।

दुकान का नाम हेनकेन बाम मोटर स्पेयर पार्ट्स है।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

लोगों को आकर्षित करने के लिए इसे पुतलों में सजाया गया है।

बैठने के लिए पीछे कुर्सी भी रखी गई है।

एक औरत अपनी फोटो खींचा रही है।

ये एक शादी की फोटो लग रही है सोफे पर दो नोजवान लड़के बैठे हुए हैं।

पहाड़ के बीच से ये नदी बह रही है।